और स्टेचू सोनाली रंग का पूरा कलर किया हुआ है।

जिसके रेड कलर से पुरे चादर बिछे हुए है ।

जिसमे लिखा है महावीर हार्डवेयर और बहुत सारे समाने है आस-पास में कुछ बाइके भी नजर आ रही है।

इसमें बहुत सारे हरे भरे --

जो आसमानी कलर का आसमान है जिसमे --

पार्क के अंदर में एक स्विमिंग पूल है ।

बहुत सारे हरे-भरे वृक्ष भी है।

चन्दन के रूप में दिख रही है।

एक प्लेटफार्म पर ट्रैन खड़ी है ।

क्रीम कलर की है ।

यह एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. है इसके अंदर कुछ व्यक्ति कतार में खड़े हो कर के पैसा निकलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।

चिड़िया खाना में यहां पर तीन मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं।